यहां पर एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जिसमें हरियाली लगी हुई है यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो गाड़ी चला रहा है एक रोड दिखाई दे रहा है।

कुछ कुरकुरे दिखाई दे रहे है डिब्बे रखे हुए है जो दिखाई दे रही है एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक स्टेज दिखाई दे रही है स्टेज के साइड मे लाइटें लगी हुई है जो दिखाई दे रही है कुछ छत्ते से लगे हुये है जो दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर शटर लगी हुई है यहाँ पर कुछ ग्राउंड दिख रहा है जिसमें हरियाली लगी--

गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो दिखाई दे रही है यहाँ पे टेंट लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है सजावत की गाई है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पर एक काउंटर रखा हुआ है जिस पर एक काँटा और कुछ डिब्बे रखे हुए हैं कुरकुरे रखे हुए जो दिखाई दे रहे हैं रेको पर कुछ--

यहाँ पर कुछ डैम पानी मे दिवारे खड़ी हैं जो दिखाई दे रही हैं।